भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

टेबल पर बहोत ही सुंदर चांदी की मूर्ति बनी हुई दिख रही है।